सामने के लिए कुछ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

क्रिम कलर रेड कलर अलग अलग प्रकार के कलर है ऊपर ए_सी लगी हुई है।

यह किसी पार्टी फंक्शन की सजावट का फोटो है।

यह एक व्यक्ति ने अपनी फोटो क्लिक की है।

यहां एक भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है जिसका फोटो ये नाइट में क्लिक किया गया है।

पेड़ में एक बोर्ड लगा हुआ है पिछले का फोल्डर में एक नेट नेट वॉल लगी हुई है जिस पे शायद

पास में एक रैंक वाली अलमारी है यहां पर शायद एक विंडो है जो ग्रीन कलर के पर्दे से बंद की गई है।

पास में एक उम्म बोरियों से लदा हुआ है ट्रक भी खड़ा है।